एगो ऊपर में छत दिखाई दे रही गाड़ी की पीछे काउंटर वाइज कुछ खुला है शॉप वगेराह और जमीन में मिट्टी दिखाई दे रही।

कुछ रोड्स दिखाई दे रही है पिलर बाँध रहे इसमें सेंट्रिंग डल रही है कुछ बादल दिखाई दे रहे है कुछ कपड़े दिखाई दे रहे है लकड़ी --